सामने एक बहोत बड़ी छत दिखाई दे रही है| म्मम्म जिसके घेरा बाउंड्री है और अम्मम्म बाउंड्री पर कुछ गमले रखे हुए हैं।

सामने एक अ- मकान दिखाई दे रहा है। उम्म एक बड़ी सी दिलहम दिखाई दे रही है। जिसमें टिन सेट है। कुर्सी --

मालाओं की दुकान है। जिसमें लाल रंग की माला है। खूब सफेद फूल की माला है और जिसमें बहुत सारे आदमी खड़े हुए है।

सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। जिसके सामने एक उम्म पार्क दिखाई दे रहा है। पार्क में हरी घास लगी है।

एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें टाइल्स लगे हुए हैं और पेपर रखे हुए हैं।

उम की चिड़िया बनी है और --

यह और हरे बड़े -बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है और झाड़ियां दिखाई दे रही हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

एक बड़ी गगरिया रखी है दो थाली रखी हैं जल का लोटा रखा है घंटी रखी हैं पानी रखीं हैं एक आदमी पूजन कर रहा --

हैं कुछ पैकेट रखी हैं बिस्किट की पैकेट हैं शैंपू की पैकेट हैं और म म म कुछ पैकेट टंगी हुई हैं और फ्रिज रखा है और पानी की बोटल --